कांच की खिड़कियां है लाल काले रंग की गाड़ी है।

रोजी लाल रंग की स्लाइड है उसकी सीढ़ियां गुलाबी हरे रंग की है।